यह एक बड़ा सा बिल्डिंग बनी हुई है इसके बाहर बहुत सारे पेड़ लगे हुए है जिसके साइड में हरे कलर की बॉर्डर लगी हुई है।

ऊपर बोहोत सारा पोज फुल्लो से सजा हुआ सामान भी रखा हुआ है।

यहाँ पर बहोत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे रेड कलर की चेयर्स बहोत सारी रखी हुई हैं।